इसमें जेंट्स वगैरा भी दिख रहे हैं कोई सेल्फी ले रहे हैं।

महाराणा प्रताप जी दिख रहे हैं घोड़े पर उन्होंने झंडा लेकर रखा हुआ है।

और वो एक पिलर पर खड़े हुए है।

लाइट्स जल रही है ब्लू पर्पल कलर की।

अमेजिंग स्टूडियो दिख रहा है होटल दिख रही है।

और बहोत सारी शटर वगैरा दिख रही टीन दिख रहा है यहाँ हाउस भी दिख रहा है।

जेंट्स जाते हुए नजर आ रहा है लाइट दिख रही है।

काफी लेडी काफी जेंट्स दिख रहे हैं।

कार दिख रही है बाउंड्री वॉल दिख रहा है शटर भी दिख रही है बादल भी अच्छा है फैन दिख रहा है।

लाइट दिख रही है कंप्यूटर दिख रहा है।

चेयर दिख रही है शटर्स दिख रही है।

लोहा का सीरिये वगैरा दिख रहे--

कार रिपेयरिंग हो रही हैं। जेंट्स ने स्लीपर्स पहना हुआ हैं।

एक हाउस दिख रहा है हाउस के बाहर टीन शेड लगा है।

बड़ा सा गेट लगा हुआ है पिलर्स खड़े हुए मौसम साफ दिख रहा है।

लोहे के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे रखे हुए हैं।

टेंपल दिख रहा है इस टेंपल पे सनलाइट्स आ रही है।

बहुत प्यारा सा फ्लावर दिख रहा है उसके लीफ वगैराह दिख रही है ग्राउंड दिख रहा है।

ग्राउंड में ग्रास लगी हुई है।

मौसम साफ दिख रहा है साइड में पेड़ पौधे बहोत सारे लगे हुए हैं।

स्टेज लगा हुआ है पिछे मे पर्दा दिख रहा है उस पर्दे पर फ्लावर लगे हुए हैं।

नीचे टाइल्स वगैरह भी दिख रही है वॉल पर फर वॉल पर फ्रेम वगैरह भी दिख रही है।